ये किसी नारगढ़ के किले की फोटो दिखाई दे रही है।

ये किसी रूम की फोटो दिखाई दे रही है जहां पर एक बेड पड़ा हुआ नजर आ रहा है।

टेबल पे दो रिमोट भी पड़े हुए नजर आ रहे है और एक प्लास्टिक की कुर्सी भी रखी हुई दिखाई दे रही --

यहां नीचे की ओर एक ऑफिस भी बना हुआ दिखाई दे रहा है जिसके गेट पे कुछ लोग भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

जहां पर बहोत सारी अलग अलग कलर की अलग अलग साइज की मछलियां रखी हुई नजर आ रही है।

इसके बाहर की ओर एक बड़ा सा मगरमच्छ सोया हुआ नजर आ रहा है जो की किनारी पे पड़ा हुआ है।

जो कुछ सामान देख रहे हैं और कुछ रेलिंग के पास खड़े हुए आपस में बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं।

और बाहर की ओर एक स्कूटी भी खड़ी हुई नजर आ रही है।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

जोकि एक जल महल का है यहां पे कुछ सीमेंट के हाथी बने हुए हैं और उनके पीछे की रैली भी बनी हुई दिखाई दे रही है।

ये किसी डी_जे साउंड की गाड़ी की फोटो दिखाई दे रही है जिसमें बहोत सारे स्पीकर माइक लगे हुए नज़र आ रहे हैं।

यहां पर मछलियों का खाना भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है यहां एक टेबल पड़ी है जिसमें बाउल वाला फिश एक्वेरियम भी रखा हुआ नजर आ रहा है।

दो लाल कलर की कुर्सियां पड़ी हुई है और दो आदमी और एक औरत भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

बिल्डिंग की फोटो दिखाई दे रही है जिसमें बहोत सारे दरवाजे जैसे बने हुए नजर आ रहे हैं।

ये किसी ग्रीन स्टूडियो की फोटो दिखाई दे रही है जहां पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के छोटे छोटे पेड़ पौधे--

ये किसी मंदिर के बाहर की फोटो दिखाई दे रही है जोकि एक बहोत ही बड़ा बना हुआ मंदिर है।

यहां पे कुछ लोगो के द्वारा पटाखे जलाये जा रहे हैं और कुछ फुव्वारे भी जलाये जा रहे हैं।

ये एक अंधेरे में ली हुई फोटो दिखाई दे रही है।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

इसके नीचे की ओर एक लाल कलर का मैट भी बिछा हुआ दिखाई दे रहा है और पीछे की ओर दो सफेद कलर के सोफे भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।